काफी पौधे भी मुझे दी दिखाई दे रहे हैं।

देखने में पिक्चर ने काफी अच्छे तरीके से खींच रखी हुई है।

ऊपर तीन तल्ला घर भी बनाया बना हुआ है।

ए_सी वगैरा मुझे दिखाई दे रहे है ए_सी लगा हुआ है।

जो मुझे एक मतलब किसी तरह का रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है और--

और मतलब पिक्चर में काफी लोग मतलब दिखाई दे रहे हैं और पिक्चर में लगभग अ --

यहां पर मुझे एक वाला दिखाई दे रहा है।

मुझे फोटो को देख के लग रहा है कि पीछे एक--

और सामने जो एक बिल्डिंग बनी हुई है।

देखने में जो पिक्चर है वो काफी अच्छी--

इस फोटो में मुझे दिखाई दे रहा कि ये किसी फायर स्टेशन की--

इस फोटो में मुझे ये किसी शाम स--

यहां पर मुझे अ कुर्सियां वगैरा भी रखी हुई है।

सामने आस पास सारे पेड़ पौधे और घास पूस सब बने हुए हैं जो देखने में--

मतलब गमले वगैरह सब दिखाई दे रहे हैं और--